जैसा की में देख सकता हूं कि बेड पर तकिए रखे हुए हैं।

जैसे कि मै देख सकता हूं यहां पर कार ररखे हुए है।